से एक हॉल का दृश्य है और यहां पर बहुत बड़ा सा एक हॉल है।

यहां पे कई सारी मिट्टी भी दिख रही हैं और यहां पे आसमान भी लिख रहा है।

और यहां पे कई सारे घास भी दिख रहे हैं।

और यहां पे कई सारे टूटे फूटे घर भी दिख रहे है।

कुछ यहां पे महिला आपस में बात कर रहे हैं।

यहां पे कई सारे बड़े बड़े चट्टान भी दिख रहे हैं और यहां पे कई सारे बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं।

और यहां पे कई सारी नकली फूल भी लगाई गई हैं।

और यहां पर कई सारे प्लास्टिक भी रखी गई है।

और यहां पे कई सारे व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

यहां पे असमान भी दिख रहा है और यहां पे लाइन का तार भी गया हुआ है।

और यहां पे पौधे भी लगी हुई है।

यहां पे कई सारी कपड़े लगी हुई है और यहां पे दीवालों पे कुछ लिखा गया है और यहां पे कुछ पोस्टर लगी हुई हैं।

यहां पे दिवालो पे कुछ लिखा गया है और जमीनों पे टाइल्स बीछा हुआ है।

यहां पे कई सारे टाइल्स बिछी हुई है।

और यहां पे कई सारे बोड़ी भी रखी गई है।

यहां पर कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

दृश्य में एक कार खड़ा है और यहां पे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

यहां पे कई सारे पोस्टर लगी गई है और यहां पे कई सारे दरवाजे हैं।

यह दृश्य पेट्रोल टंकी का दृश्य है और यहां पे कई सारी लाइट लगी हुई है।

पाइप लगाया है ढला रहा रहा है तुरंत ऊपर पाइप लग रहा है वायरिंग का काम हो रहा है।

और यहां जमीनों पे टाइल्स बिछी हुई है।

डी_जे ब्लैक रंग से रंगा हुआ है और यहां पर कई सारी लाइट लगी हुई है।